अंदर एक वाइट कलर की कार है।

ठेला है और उस ठेले में कचड़ा कोई इकट्ठा किया गया है।

जैसा की हम इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें एक बाइक भी खड़े हुए दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे ऑटोमोबाइल है कुछ ऑटोमोबाइल खाली हैं और कुछ ऑटो अ फूल हैं।

यह पिक्चर किसी दुकान का दिखाया गया है जहां की अ पेंट मिलते--

इसमें से कुछ कारे सर्विसिंग के लिए खड़ी है।

यह पिक्चर किसी मार्केट एरिया का है जिसमें दुकान को दिखाया गया है।

इसे इसकी पूजा कर रहे हैं।

कुछ येलो कलर है कुछ ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि इस पिक्चर में दर्शाया गया है।

पिक्चर किसी किराना स्टोर का दिखाया गया--

और इसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन दिखाई दे--

यह पिक्चर किसी ऑटोमोबाइल टी टेलिंग --